java में strings पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
strings case बनायें strings जोड़ना और सामान्य strings operations को प्रदर्शन करना जैसे लोअरकेस का अपरकेस में परिवर्तन करना
इस tutorial में हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको java में data types का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाइ गई हमारी website पर जाएँ
java में string अक्षरों का अनुक्रम है
strings शुरु करने से पहले हम पहले character डेटाटाइप देखेंगे
अब eclipse पर जाएँ
बाकी code के लिए आवश्यक हमारे पास eclipse ide और skeleton है
हमने class stringdemo बनाया है और main method जोड़ा है
main method में type करें char star equal to single quotes में asterisk
यह statement star name के साथ एक variable और char का type बनाता है
यह वास्तव में एक अक्षर संचित कर करता है
कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द print करें
char line को हटाएँ और type करें
char c1 equal to single quotes में c
char c2 equal to single quotes में a
char c3 equal to single quotes में r
हमने तीन अक्षरो का उपयोग करके शब्द car बनाया है
अब शब्द को print करने के लिए उनका उपयोग करें
type करें
system out print c1;
system out print c2;
system out print c3;
कृपया ध्यान दें मैं println की जगह print का उपयोग कर रहा हूँ इसलिए सभी अक्षर एक ही line में print हो रहे हैं
file को सेव करें और रन करें
हम देख सकते हैं output अपेक्षित है
लेकिन यह method केवल शब्द को prints करता है लेकिन बनाता नहीं है
शब्द बनाने के लिए हम string data type का उपयोग करते हैं
इसका अभ्यास करें
main method के अंदर से सभी को हटाएँ और type करें
string greet equal to hello learner:
ध्यान दें शब्द string में s अपरकेस है
और हम delimiters के रूप में single quotes के बजाय double quotes का उपयोग कर रहे हैं
यह statement variable greet बनाता है जो कि string का प्रकार है
अब message को print करें
system out println greet;
file सेव करें और रन करें
हम देख सकते हैं कि message variable में संचित हो गया है और यह printed हो गया है
strings को java में भी जोड़ा जा सकता है
देखते हैं यह कैसे करें
मैं message से learner को हटा रहा हूँ
हम भिन्न variable में name को संचित करेंगे
string name equal to java;
add हम message बनाने के लिए strings जोडेंगे
string msg equal to greet plus name ;
print statement से greet को message में बदले file को सेव करें और रन करें
हम देख सकते हैं कि output greeting और name दिखा रहा है
लेकिन यहाँ उन्हें कोई space अल नहीं करता है
अतः एक space अक्षर का बनाएँ
char space equal to single quotes में space
ध्यान दें मैंने variable name में सभी अपरकेस अक्षरों का उपयोग किया है अतः यह स्पष्ट है
आप इसे अपनी आवश्कतानुसार बदल सकते हैं
add message में space जोड़ें
greet plus space plus name
file को सेव और रन करें
अब हम देख सकते हैं output स्पष्ट और अपेक्षित है
अब कुछ string operations देखें
मैं शब्द hello के कुछ अक्षरों को अपरकेस में और शब्द java को अपरकेस में बदल रहा हूँ
हालाँकि जब यूजर input देता है तो हमारे पास इस प्रकार से मिश्रित values होती है
अतः output देखने के लिए file को रन करें
हम देख सकते हैं output स्पष्ट नहीं है
अतः इनपुट को स्पष्ट करने के लिए string methods का उपयोग करें
type करें greet equal to greet tolowercase ;
यह statement string greet के प्रत्येक अक्षर को lowercase में बदलता है
name equal to name touppercase ;
यह statement string name के प्रत्येक अक्षर को अपरकेस में बदलता है
file को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि string मेथड का उपयोग करने के बाद output as स्पष्ट है
this प्रकार हमने strings बनाए और strings operations को कार्यान्वित किया
यहाँ अधिक स्ट्रिंग मेथड है और
उनकी चर्चा हम कठिन विषय पर कार्य करते समय करेंगे
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
इस tutorial में हमने सीखा
strings को कैसे बनाएँ और जोडें
और case कार्यान्वित करें जैसे लोउरेकस और अपरकेस को बदलना
इस tutorial के लिए नियत कार्य के रूप में
java में strings के concat method के बार में पढ़ें और ज्ञात करें कि यह strings जोड़ने से कैसे भिन्न है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
spoken tutorial project team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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद